का चित्र है यहाँ पे एक मंदिर है।

और उजले रंग भी है इसमें और वो लगता है घास खाने आया है।